पिक्चर एक रेलवे स्टेशन का है यह रेलवे स्टेशन में कुछ लोग पटरी पार कर रहा है।

पिक्चर एक रेलवे स्टेशन का है यह रेलवे स्टेशन में बहोत सारे लोग जमीन पर बैठकर एक प्लेटफार्म पे वेट कर रहे हैं यहाँ से थोड़ी दूर पर एक स्टॉल है।

दरवाजे़ पर फूलों से सजावट करी गयी है और बहुत सारे रंग बिरंगे बलूनस् लगे गए लगे हैं।

ये पिक्चर एक स्कूल का है यह स्कूल के दरवाजे येलो और ग्रीन कलर के हैं यह स्कूल --

पिक्चर एक बिल्डिंग के बाहर की है यह बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर कुछ दुकानें हैं एक दुकान खुली है और दो एक और दुकान बंद है।

यह स्कूल के अंदर दो पेड़ हैं और दूर में एक टॉवर भी है | यह स्कूल की दीवार वाइट कलर की है।